एक टीचर वो देख रही है यहां सभी स्टूडेंट --

ये एक फंक्शन की तैयारी हो रही है ऐसा दिख रहा है।

इसमें कुछ बड़ा सा फंक्शन का आयोजन होने--

वाला है ऐसा लग रहा है। यहा सब--

प्वाइंट्स दिख रहे हैं हरियाली दिख रही है।

ये एक मॉल का चित्र है ये मॉल का नाम प्रतीक मॉल है इसमे--

ये चित्र कोई पार्किंग का है ऐसा लग रहा है।

एक ए_टी_एम है ए_टी_एम का नाम ये--

लोहे का टेन भी कुछ बना--

उसके बाजू में बहुत सारे पेड़ है।

लग रही है इसमें बहोत सारी मछलियां दिख रही है और ये मछलियां मरी हुई है।

और बहुत सारी जगह भी दिख रही है।

फोटो खिंच रहा है ऐसा दिख रहा है यहां बहुत सारी--

ये एक साबरमती नदी का चित्र दिख रहा है ये नदी का नाम साबरमती है साबरमती की नदी--

मोर का चित्र लग रहा है इस मोर पे संभाजी ये इस काउंटर लग रहा है इसमें सभी प्रकार संभाजी--

लौकी भीन मर्ची मैथी करेले--

कंपनी के बाहर बहुत सारे पेड़ देख रहे हैं।

क्लीनिक का चित्र लग रहा है उस पे--

ऐसा लगा रहा है कि बहुत सारी जगह में हरियाली है।